चित्र में घर बन रहा है जिससे एक व्यक्ति बना रहे है| साथ ही उनके छत्त पर कई सारे ईट बालुए रखे हुए है और एक दो बोरीया भी फेखी हुयी है| उनके छत्त के उपर से कई सर तारे भी गयी है| साथ ही घर के चारो तरफ बड़े बड़े पेड़ है और बहुत बड़े बड़े घर भी बने है।

साथ ही इसके ऊपर एक बोर्ड लगी हुई है जो की बहुत बडी दिख रही है| जिसका रंग सफेद और लाल है साथ ही इसके बगल मे एक और दुकान है | जिसके बार एक व्यक्ति खडे जे होनी| लाल रंग का फर्निचर काला रंग का पेन्ट पेहना है साथ ही उस दुकान के बाहर एक टेबल लगी हुई है।

मेदान बनी हुई है जो की काफी बडी दिख रही है| मेदान के चारो तरफ बोहोत बडी -बडी सी गाडीया खडी है जो की लाल सफेद और काले रंग की दिख रही है| उसके चोरा तरफ बोहोत बडे -बडे से पेड लगे हुए है| साथ कई सारे लोग भी खडे है।

जो मे घर बनी हुई है जो काफी बडी -बडी सी दिख रही है जिनका रंग हरा नारंगी और नीले रंग का है| साथ ही उसके सामने कई सारे लोग खडे हुए है ।

जो मे एक बनी हुई है जो की बहुत लंबी दिख रही है| साथ ही मे उसमे पर्दे लगे हुए है जो की हरे रंग का दिख रहा है ।

जो मे घर बनी हुई है जो की बहुत बडी दिख रही है| जो की सफेद बादामी और भूरे रंग की है | इसमे बहुत सारी खिड़किया बनी हुई है जो की शीशे की है।

साथ ही रोड में कई सारी गाड़िया चल रही है उसके ठीक बाई ओर एक घर बनी हुई है घर के समाने कई सारे स्ट्रीट लाइट लगे हुए है जो कि बहुत बड़े-बड़े से दिख रहे है साथ ही रोड पर कई सारी गाड़िया भी चल रही--

एक मैदान दिख रही है काफी बड़ा मैदान दिख रहा है| मैदान में छोटे-छोटे घास उगे हुए है| साथी मैदान पे एक व्यक्ति लेटे हुए है दिन जिन्होंने काले रंग का कमीज़ और काले रंग का पेंट पहना हुआ है।

इसके नीचे बोर्ड लगी जो ब्लू रंग की है| उसके नीचे दुकान बनी है| दुकान के नीचे सामान्य रखी है उसके नीचे दो-तीन डब्बे रखे हुए हैं| सामने कई सारी गाड़ियां भी खड़ी है।

स्टेज के ऊपर कैसी लाइट लगी हुई है जो की पीले रंग की है| साथ ही उनके दोनों तरफ बड़े-बड़े से साउंड बॉक्स रखे हैं जो कि काले रंग के दिख रहे हैं ।

सामने कई सारे घरे बने हुए है जो की के है सामने ग्रिल लगी हुई है साथ ही एक दो घरे बनी हुई है जो की काफी बड़ी है।